जहां पर काफी तरह के--

इलेक्ट्रिक शॉप की है।

वाशिंग मशीन मिल रहे हैं।

एक नदी गई हुई है।

राजधानी होटल है।

काफी सारी लाइट्स लगी हुई है।

जिसमें काफी कंफर्टेबल चेयर्स और टेबल ।

इसमें काफी सारे घर--

इसमें कुछ व्यक्ति भी--

एक सिग्नल टावर भी है।

किराने और कुछ खाने-पीने के सामान --

और इसकी दीवार वाइट कलर की।

और यह डिश काफी टेस्टी है।

और इसमें काफी भीड़ भी है।

जिसका नाम कृति योगा है।

यह पिक्चर एक जिम की है।

एक इलेक्ट्रिक पोल भी है।

ये पिक्चर एक मेले की है।

वाइट कलर की है।

यह पिक्चर में काफी सारी बिल्डिंग्स --

ये पिक्चर इंडिपेंडेंस डे की है।

जिसमें काफी सारे व्यक्ति--

काफी अच्छी डिजाइन दी गई है।

गया हुआ है इस नदी में --

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक व्यक्ति भी--

ये पिक्चर एक जिम की है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

और इसमें काफी सारे--

कुछ ट्यूबलाइट्स है।

योगा क्लास की है।

अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं।

ये पिक्चर एक फील्ड की है जिसके अंदर --

काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक्चर लॉर्ड गणेशा की --

ये पिक्चर एक चूड़ियों की दुकान का है।

जिसमें काफी सारी लेडीज --

सेलिब्रेट कर रहे हैं।

इस पिक्चर में एक।

जिसमें चार लड़कियां दो लगा रही हैं।

एक काफी बड़ा फील्ड --

बाउंड्री से कवर है।

इसके ऊपर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

नीले और वाइट कलर की है।

यह पिक्चर जी_टी रोड का है।

ये पिक्चर एक योगा क्लास की है।

काफी सारी किताबें बिक रही हैं।

डांस क्लास का है जहां पर --

डांस सिखा रहा है।

और नीचे वाइट फर्श है।

सिग्नल टावर भी है।

ऊपर की साइड मौसम काफी सुहाना है।

कुर्ती की है जो काफी--

जहां पर काफी सारे व्यक्ति--

जिसके बाहर काफी सारे--

रेड और वाइट है।

जिसका नाम औरंग एम इमरजेंसी हॉस्पिटल --